यहां पर बहुत सारे अवार्ड एक साथ रखे हुये हैं अगल बगल मे बहुत सारे गुब्बारे देखे जा सकते हैं। ज़्यादातर गुब्बारे--

यहाँ पर एक सामने एक छोटा-सा मकान दिखाई दे रहा है जिसे नेवीब्लू कलर से पेंट किया है नीचे एक ग्राउंड दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा सा लाइट का पोल खंभा देखा जा सकता है जिसपे लाइट की तारें लगी हुई है सामने से ट्रेन आती या जाती देखी जा सकती है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है रेल लाइन की दूसरी तरफ --

सामने यहां पर लाइट की तारे जाती हुई दिखाई दे रही है और इसकी दूसरी तरफ भी पेड़ वगैरा हल्की-हल्की घासे दिखाई दे रही है अगल-बगल में भी कुछ यहां पे छोटी-छोटी मकाने दिखाई दे रही है ऊपर नीला आकाश देखा जा --